यह एक होटल का दृश्य है जो--

काफी सुंदर देखने में लग रहा है सोफा और।

उसमें क्या क्या लिखा है नहीं पढ़ रहा है लेकिन वाइट से कुछ लिखा हुआ भी है।

हे फुल भी लगा हुआ है और अंदर में शीशा का प्रयोग भी किया हुआ है और--

यह एक मैदान का दृश्य है जो--

यह एक दुकान का दृश्य है जो बहुत सारे पेन पेंसिल रबर कटर साबुन सब देखने को मिल रहा है।

और उसके सैड मे फेविकोल का रखा हुआ है जो रेख मे सब सजा कर रखा हुआ है और --

रैक का कलर ब्लैक कलर का और ब्लू --

एक आदमी बैठे हुए हैं।

बाल दाढ़ी कटवाने के लिए और--

और रेड कलर का शर्ट पहने हैं और चेयर ब्लू कलर का चेयर है और सामने शीशा में देख रहे हैं।

ये दुकान में ए_सी भी लगा हुआ है।

एक काउंटर भी रखा हुआ है इसमें--

बाहर में बहोत सारे बाइक लगे हुए हैं और एक कार भी है और।

पोस्टर भी टांगा हुआ है और ऊपर में लाइट भी जल रहा है और--

यह एक भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का पोस्टर टांगा हुआ है।

सामने बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं और--

यह एक बिरयानी का दृश्य है जो बहुत अच्छा प्लेट व्हाइट प्लेट मे रखा हुआ है अच्छा से और।

काफी सुंदर देखने में लग रहा है।

यह एक गाय का दृश्य है जो--

यह एक पार्क का दृश्य है जो --

और ये काफी पुराना देखने में लग रहा है और इसका डिजाइन भी बहुत हैबी लग रहा है देखने में।

यह एक नदी का दृश्य है जो।

पानी बह के जा रहा है और--

एक पेड़ का पौधा भी दिख रहा है जो हरा पत्ते भी दिख रहे हैं और--

यह एक रोड का दृश्य है।

जो एक बाइक से आदमी जा भी रहा है।